फोटो में दो तोते हैं जिनका कलर नीला और--

इसमें एक आदमी बैठा हुआ और कुछ आदमी एक शायरी कर रहे हैं।

स्पोर्ट के लग रहे मुझे।

पीछे एक मंदिर का गेट बन रहा है। एक ऑटो है। ऑटो के एक आदमी एक --

इस फोटो में एक बहुत बड़ी अलमारी है इधर।

व्हाइट कलर का है जिसमें एक जंगला और गेट है।

ब्लैक कलर की कुछो धरी--

गदर मिट्टी के कलर का लगा हुआ है।

इस पे एक रास्ते पे एक

और जो है भैंसे काले रंग कि--